और नीले कलर का टी-शर्ट पहनो हैं जाने --

यहाँ में बहोत बड़े-बड़े दिख रहें।

ऊपर खुलो आसमान दिखरो जौन सफ़ेद-सफ़ेद बादल दिख रहे।

घुटनों के बल जमीन के नीचे देख रहो।

पल्ले के दोनों कांच ऊपर दिख रहे है पीछे एक और सफेद कारो दिख रही।

सामने लोहे को एक गेट दिख रहो।

और सामने को टायर पीछे की तरफ मुड़ो दिख रहो।

जा को पैंट को रंग कारो और टी-शर्ट को रंग सफेद दिख रए

अपने-अपने यंत्र बजाए रहीं। एक आदमी ढोलक बजाए रओ बिन के सबीन के सामने माइक धारे ऐं ।

और दीवाल को रंग जो है वो नीलो दिख रहो --

जो बहुत अच्छे कपड़ों से सजो है।

सभी कुर्सियों को रंग सफेद कपड़े से सजो है।

वामे दूल्हे को सूट दिख रओ सफेद कलर को जाके जेब में एक कारो रंग को रुमाल दिख रओ।

बीच में दिख रहो चॉकलेटी कलर को सूट ।

और पीछे को आसमान सफेद दिख रहो पूरो।